जिनके हाथों में वाद्य यंत्र संगीत गाने बजाने वाले यंत्र रखे हुए हैं।

यहां सामने की ओर एक भवन दिखाई दे रहा है भवन का रंग पीला है एवम भवन मैं--

नव निर्मित मस्जिद का दृश्य है मस्जिद का कार्य अभी चल रहा है मस्जिद--

यह एक बहुत ही सुंदर सुबह के समय का दृश्य है जिसमें हमें एक फुटपाथ दिखाई दे रहा है।

यह एक गुलदस्तों की दुकान है जिसमें सामने की ओर बहुत से गुलदस्ते हमें दिखाई दे रहे हैं।

यहां बिल्कुल खाली दिखाई जान पर रहा है कॉरिडोर दिखने में बहुत ही साफ एवं स्वच्छ दिखाई दे रहा है।

स्टेडियम के बीच में बहुत में ही सुंदर हरी-हरी घास लगी हुई हैयहां पर तीन बच्चे आपस में दौड़ लगाते हुए दिख रहे।

चार स्पीकर रखे हुए एवं ऊपर की ओर दो माइक बंदे हुए हैं एक छोटे से थालिया में रखे गए हैं।

सोते हुए स्पष्ट रूप से देख सकते हैं यात्री प्रतीक्षा के लिए लगी कुर्सियों पर--

साफ या क्लीन करते हुए देख सकते हैं कार को उपकरण द्वारा ऊपर हवा में कर दिया गया है।

यह एक विशालकाय फैक्ट्री का दृश्य है जिसमें हम कुछ --

मेहमान बैठे हुए है एवं स्टेज लगा हुआ है स्टेज की सुंदरता बहुत ही भव्य है एवम --